तस्वीर पर मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और एक स्विच बोर्ड भी है और सामने पर एक टेबल भी लगाया हुआ है।

तस्वीर पर मुझे एक साइकल और स्कूटी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सफेद रंग का कार दिख रहा है और बहुत सारे रंग का कार भी दिखाई दे रहा है।

और सामने पर ग्रीश भी लिखा हुआ है और बहो त सारा दिख रहा है।

कमरे के अंदर बैठने के लिए कुर्सी लगाया है

होटल के अंदर बहुत सारे बैठने के लिए कुर्सी और चेयर भी रखा हुआ है।

कान के अंदर बहुत सारा रैक्स भी बनाया हुआ है।

इस तस्वीर पर मुझे एक कमरा दिखाई दे रहा है।

और सामने पर कुछ तस्वीरें भी चिपकाया हुआ है।

कुछ फूल के गमले भी दिखाई दे रहा है।

और सामने पर कुछ ब्लर सा भी दिखाई दे रहा है।

बैठने के लिए कुर्सी भी है और एक ए_सी भी लगाया हुआ है।